यहां पर किसी बेबी गर्ल का बड्डे बनाया जा रहा है ये इस यहां पर--

की कोर्सेस कराए जाते हैं इसमें हर तरह के कोर्सेस जैसे की बी_सी_ए बी_बी_ए आदि--

ये स्टेज की डेकोरेशन बहुत सुंदर तरीके से की हुई है सभी ये शायद से एक पार्क है पार्क में ही सभी--

फोटो में एक फीमेल है और बाकी सब मेल डॉक्टर्स हैं।

जो ये अनुलोम विलोम करा रही है।

एक स्लाइड बनी हुई है ये बच्चों के बच्चों के लिए स्विमिंग पूल की व्यवस्था की गई है सभी बच्चे यहां पर--

स्विमिंग का मजा लुफ्त उठा रहे--

हैं ये एक समारोह के लिए चार डी_जे --

एक सर है यहां पर तीन चार एम्पलाई हैं चार एम्पलाई में से एक एम्पलाई अपने ग्राफ को प्रेजेंट कर रहा है ये एक प्रेजेंटेशन --

है तीन लोग बुक्स ख अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग खरीद रहे हैं और अंदर बैठा हुआ--

बनवा सकते हैं स्टेशनरी खरीद सकते हैं।

तो पा सकते हैं यहां पर यहां पर पैसे मार्केट से कहा कम रेट पे है।

ये एक ग्रॉसरी शॉप है यहां पर नॉनवेज और वेज दोनों तरह के प्रोडक्ट रखे गए हैं वेज में--

इंटरनेशनल मीडिया है जिसकी वजह से--

इसमें वे इसमें से टीचर सभी स्टूडेंट्स को--

पढ़ा रही है सभी टीचर सभी स्टूडेंट्स अलग यूनिफॉर्म पहनी है जिसकी वजह से पता चल रहा है कि ये कोई स्कूल नहीं है बल्कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट कोचिंग है।

हरि ओम ट्रेडिंग कंपनी यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है यहां पर आपको फर्नीचर का सामान--

यह एक डांस ग्रुप लग रहा है इस डांस ग्रुप मे--

यहां पर बहुत सुन्दर डेकोरेशन की हुई है ये डेकोरेशन में पिंक व्हाईट और येलो कलर का कॉम्बिनेशन यूज किया हुआ है यहां पर--

यह गवर्नमेंट पॉलिटो पॉलिटेक्निक इंस्टिट्यूट है इस इंस्टिट्यूट में हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई--